और घर के जो दरवाजे है और लाल कलर के पुते हैं और यहां पर तखत है तखत जो कि खड़ा हुआ है।

फूल लगे है वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है कुछ आदमी है।

ये घर हैऔर सफेद कलर का पुता हुआ है घर में कपड़े फैले हुए हैं।

एक कपड़ा गुलाबी कलर का है दूसरा थोड़ा नीला कलर का है घर के आगे कार खड़ी हुई है।

यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है यहाँ पर कुर्सियां रखी हुई है कुर्सियां नीले कलर की हैं।

एक ट्रेन है और ट्रेन चलते हुए आ रही है और यहां पे बहोत सारे पेड़ हैं और घास है।

और अ यहाँ पे बहोत सारे लोग है और बच्चे और आदमी और औरत है ।

पेट्रोल पम्प है यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और पीछे ऑइल का टैंकर खड़ा हुआ है का कलर की गाड़ी है।

और यहां पे कॉलेज के गेट के बाहार जो बिल्डिंग है उसमें काले कलर की काई लगी हुई है कलर निकल गया है।